यह पेट्रोल पम्प का शीन है और हम देख सकते हैं की ये रात का वक़्त है।

एक मैडम भी है जो इन सारे बच्चों को गाइड कर रही हैऔर बच्चे मेहनत से आपने पेंटिंग को अंजाम दे रहे हैं।

लड़कियाँ अलग-अलग पेड़ लगा रहे हैं और यह देखने में लगता है कोई स्कूल हो या कोई गर्ल्स हॉस्टल हो।

पेड़ लगाना हमारे वातावरण के लिए बहुत जरुरी होता है क्यूंकि इससे हमें एक पोल्लुशन फ्री एनवायरमेंट मिल सकता है।